और बहुत सारे बड़े छोटे पोस्टर लगे हैं।

ये बहुत सारी अलग अलग तरह के गाड़ियां खड़ी है।

बहुत सारे हरे भरे पेड़--

जो कि लाल सफेद और काले रंगों की है।

बहुत सारे आदमी लोग खड़े हैं बीच में ग्राउंड है बड़ा सा।

एक काउंटर है जो की सफेद रंग का है।

रैक का भी रंग सफेद है।

बड़ा सा रैक है जोकि लकड़ी से बना है।

और सामने दो बल्टिया है।

पीछे एक बड़ा सा कागज है।

सामने एक टेबल हैं।

उसके बाहर कई सारे पोस्टर लगे हैं।

जोकि वाइंडिंग करने का है।

और कूट से कवर किया गया है।

इस फोटो में एक पोस्टर है।

शीशे के ऊपर एक ट्यूबलाइट चमक रहा है।

हवन कुण्ड है जो की पीले और लाल रंग का है।

पीछे बहुत ज्यादा खाली जगह है।

बड़े बड़े पेड़ है पीछे।

सामने एक टेबल है जो की लकड़ी का है।

रंग हरा और सफेद है।

उसके ऊपर पन्नी लिपटा है।

रैकों पर बहुत सारी किताबें रखे हुए हैं।

पेन वगैरह भी दीवार पे टंगा है।

और बीच में लाल रंग का कारपेट है।

और लाइन से पूरा सीढ़ी है।

एक बिल्डिंग का रंग हल्का हरा जैसा है।

इसके बाहर शेड बना जोकि सफेद रंग का।

जो कि नीले रंग का है और सामने दो लड़किया खडी है।

एक बाइक है नीले रंग का।

और रैक के अंदर से रंग सफेद है।

जो लाल रंग का टी शर्ट और काले रंग का पेंट पहना है।

ने एक नीले रंग का क्रेट हैं।

बाहर से भी हरा है।

उसमें बहुत सारा मोटर रखा है।

और बहोत सारे आदमी लोग खड़े हैं।

एक साइड नेट लगा है।

सामने एक लोहा का पोल है जिसमें जंग लगा है।

पाइप वगैरा का सामान है और इलेक्ट्रिसिटी का सामान है।

जोकि सारे डब्बे में है।

कई सारे स्विच सॉकेट है।

और ऊपर से लेकर नीचे तक उतरने के लिए सीढ़ी है।

बीच में एक स्टेज बना है।

के किनारे हरे घासों और फूलों से सजाया गया है।

फोटो में एक बड़ा रूम है।

दिन का समय है ऊपर से रोशनी आ रहा है।

जो नीले रंग के तिरपाल से ढका हुआ है।

ऊपर करकट लगा है जोकि टीन का है।

पीछे भी बहोत सारे पहाड़ है।

जोकि प्लास्टिक के है और उनका रंग भूरा है।